ये एक कॉलेज जैसा दिखाई दे रहा है ये कॉलेज की बिल्डिंग है।

ये एक चौराहा जैसा दिखाई दे रहा है। चौरा के बीचो बीच एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।

सामने की तरफ एक बिल्डिंग है बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे की तरफ एक सेट बनी हुई है।